नीचे ब्लू (blue) पर्पल (purple) पिंक (pink) वाइट सभी ने अलग- अलग कलर की मैट बिछा रखी हैं अपने नीचे और ये सारे के सारे एक जैसा ही योगा कर रहे हैं यहाँ पे बड़े बच्चे भी हैं छोटे छोटे |